एगो तोप लेखा है कथी दुनी एगो दुगो चक्का हई नाचे वाला हई ए पेड़ हई एगो दुगो तीनगो चरगो पाँचगो एगो हरियर-हरियर हई एगो पोल हई एगो मस्त हई अथि देवाल हई एगो ओन्ने पेड़ हई।